और ये उं बड़े अमाउंट में मिक्सिंग करता है।

जो कि अच्छी बात है चारों साइड से साफ सफाई का भी बहोत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है।

और यहाँ पास बहोत सारे समाना बिखरे हुए हैं।

सामने आवास ट्राइबल फंक्शन दिखाई दे रहा है।

और इनके पास बड़े बड़े ढोलक भी हैं।